साइड में एक आंटी हैं जो ग्रीन और व्हाइट कलर की साड़ी पहने हुए हैं। उनके गोद में एक बच्ची भी है। साइड में एक बच्चा है जो चल रहा है और काफी सारे लोग ऑफिस में बैठे हुए हैं।

तार लगे हुए है बहोत ज्यादा पेड़ जमीन मे गिरे हुए है कार खड़ी हुई व्हाइट कलर की और जमीन पे मिट्टी पड़ी हुई है बहोत सारी रेड्डीश मिट्टी है ।

ये एक चर्च का फोटो है। चर्च के बिल्डिंग येल्लो और वाईट कलर से पेंट हुई हैं और चर्च के बाहर काफी सारे लैम्प लगे हुए हैं और बहोत सारे लोग खड़े हुए हैं।

यह एक फोटो हैं वैन का। इसके ऊपर परफेक्ट लिखा हुआ हैं ब्लैक कलर से एफ का कलर येलो वैन का कलर व्हाइट हैं।